खड़े होने से बहुत आरामदायक भी महसूस नहीं होता और इस पर बच्चे का जाना माना होता है।

खिंचवाया है और यह इस घर में रहते हैं।

और इसके बाद यह इसको कुछ भी क --

घर पर चला भी सकते हैं यह ई-रिक्शा --

हम सब बैठकर खाना खाते हो इस होटल का बिल पे कर कर हम कर चले जाते हैं।

बैठकर अपने अपने दोस्त के साथ भी यहाँ पर आते हैं और बैठ कर बातें भी करते हैं और --

यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग अपना इलाज करवाने आते होंगे और --

उसके बाद में कार सही कर लेगा और इसकी कार हो जाये --

घोड़े के साथ मूर्ति लगाई गई है क्योंकि ये एक महान राजा थे जो जिन्होंने --

और शायद से यह सड़क मेरी जानी पहचानी जगह लग रही है शायद से यह मेरे घर के आगे है।

और यार येतो मेरे घर के आगे वाले सड़क आ गई। यार क्या बोलूं। चलो कोई --